इस चित्र में आर्ट दिख रहा है और आसपास बहुत बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

मेरा यहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है और पानी भी बहुत दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा स्कुल दिखाय दे रहा है और इसके आगे पीछे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है और इस स्कुल के ग्राउन्ड में बच्चों की सायकल दिखाय दे रहे है और एक आदमी बाइक पर --